बड़े बड़े गाड़ियों के पीछे एक घना जंगल दिखाई दे रहा है।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

बड़े बड़े गाड़ियों के पीछे एक घना जंगल भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर एक और कुछ स्कैनर्स रखे हुए हैं।

रिजॉर्ट के अंदर तीन कमरे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा महल दिखायी दे रहा है।

रेस्टोरेंट की दीवारों पर तस्वीरे लटकाई गई है।

दीवार के पीछे एक बस एक गाड़ी और तीन चार बाइक रखा है।

उनके अंदर स्विच बॉक्स लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक सब्जी का दुकान दिखाई दे रहा है।

सब्जी के दुकान के अंदर किसीम किसीम के सब्जी रखे हुए हैं।

जनता डेरी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

बेकरी शॉप के बाहर बहुत सारे गाड़ियां और स्कूटी बाइक्स पार्क करके रखी है।

रूम की दीवार पर सेल्फ लगी हुई है।

हॉल के अंदर बहुत सारे लैपटॉप्स और बड़े बड़े टेलीविजन रखे हुए हैं।

टेबल के ऊपर कुछ टिशू पेपर और मसाले रखे हुए हैं।

पिंक स्टेज के बगल में एक लंबा नदी बह रहा है।

इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है।

रूम में एक बेंच और डेस्क भी रखा हुआ है।

फ्लोर के बगल में सीढ़ी है।

के अंदर दो शेल्फ रखें हुए हैं।

छोटे छोटे बिल्डिंग का छत ब्लू और रेड में है।

बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रहा है।

हॉल के अंदर बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहे हैं।

सभी इंसान ने माथे पर कैप लगा रखा है।

बिल्डिंग की दीवारों पर पाइप चढ़ा हुआ है।

हॉल के अंदर बहुत सारे लोग घूम रहे है।

छोटे से स्टेज में किसिम किसिम के कल्चरल स्टैचू रखे हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बेकरी दिखाया गया है।

बेकरी के अंदर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।